और कुछ नीम के पेड़ दिखाई दे रहें हैं जो की हरे भरे हैं।

यहां बहुत सारे डॉक्टर बैठे हैं और कुछ नर्स भी हैं और सामने एक--

लटक रहा है जिसमें लाइट जल रही है और आसपास में कुछ टेंट लगा हुआ है और पौड़ियां भी लगी हुई है एक बच्ची खेल रही है।

एक दीवार पर एल_ई_डी लगी हुई है और बहुत सारी लाइटें जग रही है और आसपास में बहुत सारी क्रीमें रखी हुई है जो की एक बार--

व्हाइट कलर की पट्टी खींची हुई है और आस पास में कुछ छोटे पेड़ और कुछ बहोत बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।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

और उनकी पट्टियां भी दिखाई दे रही है और कुछ पार्क के अंदर बेंच पड़े हैं जो कि बैठने के लिए और आसमान नीला दिखाई दे रहा है।

पास मे एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है और एक पटरी पर ट्रेन खड़ी दिखाई दे रही है उसके अंदर आधे लोग चढ़ रहे है आधे बाहर निकल रहे है।

यह किताबों की दुकान है इसके अंदर एक आदमी पेंसिल कटर रबर दे रहा है और टेबल पर रखा हुआ है उसपे कुछ --

और टेबल पर एक स्कैनर और कुछ स्नाइटाइजर की बॉटल और कुछ चिप्स और कुछ कुछ और कुछ दाल के पैकेट रखे हुए है इसके अंदर लाइटें लगी हुई है।

यह एक मंदिर है जिसके अंदर एक गणेश जी की पिक और कु --

और इसके अंदर कुछ ग्रीन लाइटे भी जली--

यह एक रेस्टोरेंट है और बहोत बड़ा मैरिज हाल है इसके अंदर बहोत सारी कुर्सियां लगी हुई है और सामने एक स्टेज बना हुआ है।